बहोत बड़ा सा स्टेशन दिख रहा है। चद्दर वाले शेड डले हुये है। यहाँ पे पिलर हैंगे । बाउंड्री जा रही है।

सामने एक बड़ी सी शॉप है उसके ऊपर पि_ओ_पि_ओ फोकोस लाईट लगी हुयी है शर्ट्स टंगी हुयी है खूब सारे कलर की शर्ट है।

का है उसके ऊपर एक टी_वी है लाल स्टूल है और वहाँ स्क्वायर शेप के टाइल्स के डिजाइन है।

ऊपर की तरफ असमान है बादल हंगे और बिच में सामने टेम्पल की तरह दिया गया है।